यहाँ पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है। यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है। एक लड़के के पीछे बैलून यहाँ बहोत सारे स्लीपर्स लगे। यहाँ पे एक आर्मी की कैप लगी हुई है।

और कार भी है यहाँ पर बहोत सारे पेड़ भी हैं। यहाँ पे कुछ दिवालो का कलर ग्रीन दिखाई दे रहा है। आसमान पूरा नीला दिखाई दे रहा --

यहाँ पे लाईट का खम्भा लगा हुआ है आसमान पूरा ब्लेक और सफ़ेद दिखाई दे रहा हैयहाँ पे।

यहाँ पे बहुत सारी बेंचेज और डेस्कस रखी हुई हैं कुछ टेबल्स रखी हुई उनपे चेयर्स रखी हुई हैं।

यहां पे एक स्टूल रखा हुआ है अंदर एक पोस्टर लगा है जिसमें एक लड़का और एक लडकी बने हुए और बहुत सारा सामान रखा हुआ है ।

एक दो तीन लोग खड़े हुए है पास रेड अ ब्लैक कलर का बैग --

पड़े भी है और यहाँ पे बहुत सारा सा यहाँ पर एक ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है और बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

यहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है बहुत सारे लोग भी खड़े हुए हैं बहुत सारी लाइट्स जल रही है यहाँ पे बहुत सारे कपड़े भी है यहाँ पे सामान रखने की ट्रौली भी रखी हुई है।

और ऊपर कुछ बना हुआ और अंदर बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं और आसमान का कलर शायद ब्लैक है और कुछ ब्लू ब्लैक है।